जिस प्रकार के बाइक लगे हुए हैं यहा पे और भी जैसे गाँव में नहीं रहते है ऊपर से पानी डाल दिए हैं वैसे मरिंया बना रखे हैं।

ये गांधी स्वच्छता उद्यान है जहाँ पे ये पेड़-पौधे बहुत होते हैं जैसे कहीं के लिए भी पेर उड़ ले गए है अच्छा लगता है ना कहीं के लिए जाते हैं तो--

धर्म कार्यालय है जहा पे पेड़ पौधे गार्डन ह हरा कलर का बिल्डिंगे है जिसमें गमला बुमला में बहुत अच्छे पेड़ पौधे सब सजा रखे हैं काफी बेहतरीन लग रहा है।

ये भी एक गमला है एएए कलर अलग-अलग है गमला सेम है मटका का ही बनाया गया हुआ है। इसको कुम्हार ही बना सकते हैं कलाकारी होता हैऔर हाथ से ही बनाया गया हुआ है।

ये छोटा सा जिम क्लब है ये भैया अपना जिम को सभी नया-नया शायद खुला ही है और तो इसको सेट कर रहे हैं इस वाले चेस्ट बनाने वाले के लिए--

जिम क्लब है | एफ प्रॉ फिट जिम क्लब है मशीन पे जिस मशीन पर दौड़ते हैं | यह एक भैया अपना चेस्ट बना रहे हैं एक अपना शीशा में देख रहे हैं | मुझे तो दो ही तीन आदमी दिख रहा है इसमें बाकी बगल--

ऊन का तरह है इसको पुतला बनाया गया हुआ है जिसमें एक हाथ का बनाया हुआ है कलाकारी बहुत ही अच्छा है।

वही सब तो दिखाया जाता है आज के डेट में अपना कलाकारी जाहा भी दिखा सकते हो आपलोग--

बगल में कैमरा का कैमरा के जैसे प्रकार का मुझे दिख रहा है कैमरा भी लगा रखी है जिसमें | और अभी यह चालू नहीं हुआ है अंदर का शो दिखाया गया है।